लेडिज़ और जेन्ट्स उस सीढ़ियों के अंदर जा रहे है और उसमें स्टेज बना हुआ है।

एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और बगल मे चट्टानें हैं। और-- पेड़ दिख रहा है।

उसके ऊपर एक तसला है जिसमे नीले कलर की एक फट्टी रखी हुई है उसके सामने एक ऑटो आ रहा है और एक व्यक्ति उस व मछली की फोटो ले रहा है।

एक पिंजड़ा दिखाई दे रहा है पिंजड़े के अंदर एक शेर है जिसकी आंखें चमक रही है।

ऊपर वाले व्यक्ति को देख रहे हैं। पत्थर बहुत बड़े हैं जिसमें थोड़ी सी बहुत काई लगी हुई है। जो ऊपर खड़ा है उसका सिर्फ जूता दिखाई दे रहा है।